बड़ी-बड़ी लाइटए लगे हैं लाइट क पास मैं एक कई सारी ब-बसे कारें आ वो आ बाइके खड़ी हुई हैं| बाइके काफी सारी नज़र आ रही है।

पास में बैठा हुआ आदमी की कई सारे लोग हैं लोग के ऊपर कई सारे फूल बैलून्स लगे हुए हैं और काफी डेकोरेट किया हुआ है इसी बड़े से शोरूम क--